और इस रोड पे अ बहोत सारे बाईकें गाड़ियां खड़े हैं और चारों तरफ बड़े बड़े लैंप जल रहे हैं।

और यहां दो तीन और बड़े बड़े साइकिले खड़ी है।

अह यह फील्ड एक बहोत बड़ा फील्ड है।

और यहां बड़े बड़े पेड़ पौधे हरियालियां चारों तरफ छाए हुए हैं।

यहां एक लड़का बैठा हुआ है मशीन पे और दोनों हाथों से--

और यहां पे एक बीच में टेबल रखा हुआ है।

सभी साड़ियों और कपड़ों को डब्बे में करके रखा गया है।

इस पानी पे पड़ रही है और बहुत सारे पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं।